यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट की है।

काफी सादी नटों को साफ कर रही है।

यह पिक्चर बिरयानी की है जिसके अंदर--

जिसका नाम होमियोपैथिक दवाखाना है।

यह पिक्चर एक सैलून की है।

इसके अंदर काफी बड़े-बड़े मिरर्स भी लगे हुए हैं।

यह पिक्चर एक लड़कियों के कपड़ों की--

और भी काफी सारे कपड़े मिल रहे हैं।

बड़े से मैदान की है।

जिसके अंदर काफी बड़े-बड़े पेर --

साड़ियों की दुकान का है।

पर्पल ऑरेंज ग्रीन बैंगनी ब्लू काफी कलर्स की सारियां नजर आ रही है।

और टेबल्स लगी हुई है।

ऊपर एक झूमर भी है।

नीचे की साइड वाइट कलर की टाइस है।

और इसमें कुछ गमले भी हैं।

और इसमें काफी सारी लाइट्स लगी हुई है।

और आगे की साइड वेलकम दी स्मार्ट वर्कशॉप --

यह पिक्चर दो साड़ियों की दुकान का है।

जिसके अंदर लड़कियों की साड़ियां मिल रही हैं।

इसके बाहर एक स्कूटी और--

कुछ साइकिल्स भी लगी हुई है।

महिला योगा कर रही है।

और इसमें काफी बड़े-बड़े मिरर्स लगे हुए हैं।

और पीछे काफी सारे वायर्स दिख रहे हैं।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

जहां पर काफी तरह के--

यह पिक्चर एक नदी का है।

अपने-अपने नाव को चला रहे हैं।

और पीछे की साइड काफी बड़े और --

यह सारी लीचियां काफी पकी हुई है।

इसकी दीवाल वाइट कलर की है।

यह पिक्चर एक बड़े से मैदान की है।

नीचे की साइड घास उगी हुई है।

यह पिक्चर एक डांस क्लास की है।

दिशामुरा इवेंट्स एंड डांस क्लब है।

इसमें काफी सारे पेड़ पौधे--

यह कैफे काफी शानदार है।

बैलून से डेकोरेशन की गई है।

श्री हिंगलाज बुक डिपो है इसके अंदर कुछ--

इसमें काफी सारी किताबें दिख रही है।

इसके अंदर काफी बड़े-बड़े मिरर्स लगे हुए हैं।

यह पिक्चर एक रथ यात्रा की है।

और पीछे कुछ पैर भी हैं ऊपर का मौसम काफी सुहाना है।

यह पिक्चर एक ऑनलाइन वेबसाइट के--

इसके अंदर एक व्यक्ति कम्प्यूटर पे काम कर रहा है।

और पीछे वाइट कलर की दीवाल है।

जिसके अंदर काफी सारे एक्सरसाईज़िंग टूल्स है।

यह पिक्चर एक कपड़ों की दुकान का है।

इसमें एक स्टैचू भी है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

क्रीम कलर की है नीचे की साइड --

और एक विंडो भी है।

यह पिक्चर एक बड़े से मैदान की है।

ये पिक्चर एक बड़े से रिसोर्ट की है।

इसमें एक एप्पल का लैपटॉप भी है।

नीचे की साइड वूडन टाइस है।

पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं।

जो अभी बन रहा है।

जिसके अंदर काफी सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

ये पिक्चर एक काफी बड़े मंदिर की है।

नीचे की साइड वाइट कलर की टाइल्स भी है।

क्रीम है और इसके बाहर कुछ--

यह पिक्चर एक फर्नीचर कि दुकान की है।

और ऊपर की दीवाल भी--

काफी बरे नदी की है।

और कुछ पेड़-पौधे उगे हुए हैं।

और इसमें कुछ व्यक्ति भी हैं।

और इसकी दीवार वाइट कलर की है।

एक बरा शा मैदान है।

इसकी दीवाल वाइट कलर की है।

ये पिक्चर एक चर्च की है।

एक्सरसाइजिंग टूल्स लगे हुए हैं।

जिसका कलर वाइट और ग्रीन है।

इसमें कुछ सिग्नल टावर्स भी नजर आ रहे हैं।

इसके अंदर काफी सारे पेड़ पौधे हैं।

जिसके अंदर काफी सारे एक्सरसाइजिंग --